बहुत डिज़ाइन से बनाया गया है और घर भी है और पेड़ भी है। बहुत सारे पेड़ हैं।

रोड है| इस रोड में दो गाड़ी भी खड़ा है बस गाडी और बहोत सारे अदमी है और बड़ा जैसा स्कूल है।

बहुत बड़ा पैण्डल बनाया गया है।

जिम सेंटर में जिम कर रहा है बोडी कर रहा है।